कुछ लोग सामान खरीदने आते हैं।

कुछ लोग रोड पे से गुजर रहे हैं।

यहां का मौसम बहुत सुहाना हो रहा है।

यहां पर शादियां होती हैं।

बहुत सारे लोग जमा हैं।

कुछ खारीदारी कर रहे हैं।

बीच में एक ग्राउंड जैसा है।

इधर लिखा है सामने बोर्ड पे इंडियन ऑइल --

यह एक शादीहाल की पिक्चर है।

ये इस्कूल का रूम लग रहा है।

और दो बोलें रखी हुई हैं।

येलो कलर की बोतल जैसा भी--

यहाँ पर एक धाबा बना हुआ है।

यह स्टेशन पे लोग करने आते हैं।

उधर एक यहां पे खड़ा हुआ है।

खुली सी छत है घरों की चादरें दिखाई दे रहे हैं।

सामने कुछ ग्राहक खड़े हैं।